यहां पे एक अंदर एक बेड है जो कि ऑपरेशन थिएटर में होता ही है रेड कलर का।

ये एक पोल्ट्री फार्म है और यहां पे बहुत सारी मुर्गियां इस फॉर्म में है।

यहां पे दर्जी की दुकान है और यहां पे ये अ कुछ कपड़े स्टिच किए उस्न किए हुए हैंगर्स में लगे हुए --

ये यहां पे एक गांव सड है और यहां पर ये गाय अपना घास खा रही है।

पीछे दो बॉटल्स भी पानी की नजर आ रही है।